यहाँं पर दिख रही है दो औरत घुंघट देके खरी हुई रही है सर झुका के।

यहाँ पे कुछ महिला बैठ के पूजा कर रही है।

यहाँ पे एक घर का छात ढलाई हो रही है कुछ आदमी काम करते हुए दिख रही है ।

मम बहोत सारे पानी दिख रई है। कुछ पत्थर दिख रई है। कुछ पेर दिख रई है।

बड़ा सा फैक्ट्री दिख रही है दो गाड़ियां दिख रही हैं गाडी के ऊपर एक आ --

बहुत सारे गुब्बारे दिख रहे हैं एक आदमी खड़ी हुई दिख रही है।

एक बड़ा सा गेट दिख रही है कुछ दिख रहे हैं कुछ पेड़ दिख रही है।